इस दृश्य में फव्वारे जैसा दिखाई दे रहा है।

किनारे कुछ सूखे पेड़ पौधे भी है।

इसके ऊपर श्री राजेश्वरी बुक लिखा हुआ है।

सड़क पर एक कार जाती हुई दिखाई दे रही है।

ऊपर अंग्रेजी वीयर मॉडल शॉप लिखा हुआ है।

सफेद रंग का एक मस्जिद जैसा बना हुआ है उसके ऊपर एक बड़ा गुंबद है।

बहुत सारे रैक बने हुए हैं उस पर डब्बों में सामान रखे हुए हैं।

इसमें बहुत सारी मोटरसाइकिलें स्कूटी व ऑटो रिक्शा भी है।

एक मोटरसाइकल खड़ी हुई है एक बड़ा पत्थर भी रखा है।

जे_सी_बी जमीन की खुदाई कर रही है।

सामने एक मकान है मकान में चार एसीयां लगी हुई हैं।

आसमान में बदल भी छाए हुए हैं कुछ बिजली के तार जैसे भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें बहुत सारे कुर्सियां सोफे वह मेज लगे हुए हैं।